और गाड़ी वाड़ी बहुत है और यहा पे आदमी भी है बहुत सारे--

यहाँ पर लगे है बहुत सारी चीज़ें लाइट व्हाइट सभी लगते है यहाँ पर रोड भी है और खुला आसमान है और यहाँ पर देखिए आदमी लोग भी आते है जाते है।

पेड़ पौधे औधे सब दिखाते हैं खुला खुला आसमान है यहां पर बहुत सभी आदमी लोग आते हैं खुला आसमान--